यहाँ पर एक टेम्पू का स्टैंड है जहाँ पर काफी सारा टेम्पू और इ व्हीकल खड़ा हुआ है।

यहाँ कृष्ण जी के हाथ में एक मुरली लगी है जोकि राधा जी ने पकड़ रखी हैं।

यहाँ पर सभी ढोल वाले एक पंखती में खड़े होक चल रहे है।

इस ईमारत के ऊपर एक विशेष प्रकार का चिंह भी लगा हुआ हैं।

के जे बड़े सुन्दर तरिके से सुसज्जित है।

ये दरवाजे के नीचे से लोग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर काफी सारी किताबें विभिन प्रकार की रेको में लगी हुई हैं और एक लाइट जल रही है।

यहाँ पर गेट के सामने कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई है।

मिस्त्री ने सफ़ेद रंग की कमीज पेहन रखी है |